तस्वीर एक बड़े से बिल्डिंग की है।

सामने की ओर बहुत सारे बाइक पार्क है।

तस्वीर में एक गेट दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में मॉरिस लिखा हुआ है। सिंस नाइंटीन --

एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिस जो सिर्फ ईटों का बना है उसके ऊपर कोई पेंट नहीं की गई है।

पीछे के सामने रास्ते जा रहे हैं उनमें एक बाइक वाला जा रहा है तथा आगे की ओर एक ऑटो नजर आ रहा है।

यह पीले रंग की है इसके बाहर में एक बोर्ड लगा तथा उसे पर हर्षित और सौम्या लिखा है।

तस्वीर एक क्लास रूम की है यहां बहुत सारे बेंचेज लगाए गए हैं।

तस्वीर किसी प्लांट के नर्सरी की है।

ने की ओर एक सफेद रंग की गाड़ी है पिकअप जिसमें बहोत सारे पौधे रखे गए हैं।

पीछे में एक मैरून कलर की कार पार्क की गई हैं।

सफेद रंग की कार भी पार्क की गई है।

दो औरते खड़ी हो कर के देख रही है।

बगल मे और ऊपर की ओर बांस के लकड़ी लगाए हुए हैं।

रॉड जो बने हैं वो लाल कलर से बनी हैं।

यह सफेद रंग की है। इसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में अमूल बनास डेयरी लिखा हुआ है।

कुछ सफेद एवं मिट्टी कलर के हैं।

पीछे की ओर एक पोस्टर है जिसके ऊपर पुश योरसेल्फ लिखा हुआ है एक आदमी ने गंजी पहन रखा है।

तथा दूसरा आदमी लूंगी पहने झोला लिए खड़ा है।

इसके ऊपर बहोत सारे लोगों के चित्र बने हुए हैं।

जिनमें कुछ लोग अंदर प्रवेश करते नजर आ रहे हैं।

इनमें पेड़ों को जानवरों के आकार का काटा गया है।

हर जगह सुजुकी का लोगो भी है।

तस्वीर रोड किनारे लगे हुए एक दुकान की है।

नीचे बहोत सारे मिट्टी के सुंदर सुंदर बर्तन बनाकर रखे गए हैं।

एक टीचर है जिसो साड़ी पहन रखी है एवं वो क्लास के बीचों बीच खड़ी दिखाई दे रही है।

एक महिला ने बूढ़ी औरत को ले जा रही है जिसने साड़ी पहन रखा है।

बगल में नीले रंग पे ग्राउंड फोर्स लिखा हुआ--

तथा उसके नीचे एक बैठने की जगह दी गई है।

सभी ने एक जैसे साड़ी पहन रखी है तथा एक ने सफेद रंग के साड़ी पहनी है।

तथा उसके किनारे किनारे बहोत सारे छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं।

एक स्कूटी वाला भी जा रहा है आकास बिल्कुल साफ है।

सामने की ओर एक बड़ा सा बोर्ड है जिसके ऊपर वोडाफोन टर्बो नेट फोर जी लखनऊ का सबसे तेज फोर जी लिखा हुआ है एवं उसपे कुछ चित्र भी--

पानी के छोटे बॉटल्स और प्लेट्स रखे गए हैं।

यहां बहोत सारी अनगिनत कुर्सियां रखी गई है जिनका कवर लाल है एवं येलो कलर का है।

गेट बहोत सुंदर सजावट की गई है।